ये मेज पर रखे हुए दर्शाया गया है। जिसमें जिसमें पेड़-पौधों के ऊपर में चिट भी लगाई गई है जोकि कागज--

डब्बों में लगाया गया है बिक्री के लिए और एक अलग ही परफॉर्मेंस दे रहा है देखने में लुक्स इस गुड ।

एक कार एक दो कार साइड में खड़ी हुई है और जिस एक कार का बोनट जिस को खुला हुआ है उनका प्रक्रिया जारी है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये कार रेडियम की दुकान है जहां कार के सभी मॉडल्स प्रकार के बोनर जो भी कार के जो --

दिया गया है और इसकी लोक मत की ये दुकान है जो कि ऊपर लगाया गया है पोस्टर ये रात का है जिसमें एक शटर बंद है और बाहर की तरफ में एक गाड़ी और दो मो बाइक --

जोकि एक पुराना विद नज़र आ रहा है इसमें सीलन भी नज़र आ रही है ये एक प्रकृति प्राकृतिक प्राउड से बनाया गया है।

एक कुर्सी वाला लगाया गया है और पीछे की तरफ मे बड़ी बड़ी इमारत भी दिखाई दे रहा है ये एक बीकानेर की पोस्ट ऑफिस के पीछे का हिस्सा लग रहा है।

इस तस्वीर में एक बेडरूम दिखाई दे रहा है जिसके एक बैग है और अह --

कुछ प्रचार के लिए बेबल लगा रखे है कि कैमरा नो एलाऊ है और वीडियो ना बनाना है प्रसाद --

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है कि ये लंबी एक नदी है झील है और उसके ऊपर एक पूल है जिसमें --

ये एक जिम सेंटर है बहुत ही बड़ा हॉल है उसमे जिम सेंटर है अलग-अलग प्रकार की भारी-भारी मशीन लगाई गई है एक्सरसाइज और योगा करने के लिए।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा हॉल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर की तरफ में लाइटें और पंखे लगे हुए हैं और नीचे की तरफ में एक टी_वी भी लगी हुई है ये एक कोई --

रेलवे स्टेशन पर ये तीन चार रेल --

इस तस्वीर में मुझे दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है और बाहर की साइड में गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़ पौधे कुर्सियां लगाई गई है और --

इस तस्वीर में मुझे कपड़े दिखाई दे रहे हैं जोकि आगे की तरफ में कांच के सेटअप लगे गए हैं और --

और ये लाइट डिजाइन है और अलग ही लाइटें लगी हुई हैं ये एक अलग ही प्रतिमा देखने वाली सौंदर्य का प्रतीक है लग रहा है।